यहाँ एक दुकान दिखाई दे रही है जहाँ पर कप नजर आ रहे हैं बहुत सारे रंग के कप दिखाई दे रही हैं।

यहाँ एक-एक मकान नजर आ रहा है एक बड़ा-सा लोहे का गेट दिखाई दे रहा है जिसका रंग काला नजर --

तारा नजर आ रहा है निचे मिट्टी दिखाई दे रही है मिट्टी का रंग भूरा नजर आ रहा है।

पर गुलाबी रंग नजर आ रहा है नीचे जमीन दिखाई दे रही है जो भूरी --

दिखाई दे रही है जो कि भुरे रंग की दिखाई दे रही है --

यहाँ एक हॉस्पिटल दिखाई दे रहा है जहाँ डोक्टर बैठा हुआ है।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

यहा एक गाड़ी दिखाई दे रही है जिसका रंग काला नजर आ रहा है एक पम्प पर रखा हुआ है जिसका रंग नीला दिखाई दे रहा है।

यहाँ फूलों की सजावट जमीन पर नजर आ रही है सामने एक दीवार दिखाई दे रही है कुछ लोग नजर आ रहे हैं एक लड़का दिख --

है लाइट नजर आ रही है लाइट का रंग सफेद दिखाई दे रहा --

मोटरसाइकिल दिखाई दे रही है सामने --

उसका रंग नीला नजर आ रहा है एक लड़का खड़ा हुआ है जो कि फोन पर बात कर रहा है।

यहाँ एक दुकान दिखाई दे रही है जहाँ लकड़ी के मंदिर नजर आ रहे हैं उनका रंग भूरा और काला नजर आ रहा है मालाएँ दिखाई दे रही है जिनका रंग --

यहाँ एक घर नजर आ रहा है जिसका रंग हरा दिखाई दे रहा है ऊपर आसमान नजर आ रहा है जिसका रंग सफेद और आसमानी दिखाई --

दे रहा है उसका रंग लाल नजर आ रहा है नीचे जमीन दिखाई दे रही है।

ऊपर आसमान दिखाई दे रहा है जिसका रंग हल्का आसमानी और सफेद नजर आ रहा है।

यहाँ एक रूम दिखाई दे रहा है जिसमें एक कुर्सी रखी हुई है कुर्सी का रंग सफेद नजर आ रहा है।

यहा एक दुकान दिखाई दे रही है जिंनमे जिसमें फ्लावर्स नजर आ रहे हैं फूलों का रंग सफेद लाल --

लाल नजर आ रहा है दिखाई दे रही है खाई के पीछे ऊंचे ऊंचे पहाड़ नजर आ रहे हैं जिनका रंग काला दिखाई --

टेबल दिखाई दे रही है टेबल का रंग भूरा नजर आ रहा है ऊपर --